इस इमेज में सामने की तरफ एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है जिसका रंग ब्लैक है।

आगे दो झोपड़ियां दिखी हुई है जिसका छत पतों से बना हुआ है।

ये मेजिक एनवायरनमेंट सीनरी दिखा रही है फोरग्राउंड में सूखी लंबी घास का मैदान है।

बीच में हरे भरे पेड़ और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

वोह एक इमारत के बाहर काम कर रहे हैं जिसकी दीवारें हल्के रंग की है और किनारो पर नीली रंग की पट्टी है जमीन कंक्रीट की बनी हुई है।

इस इमेज में एक रेलवे स्टेशन की बाहर का सीन दिखाई दे रहा है स्टेशन की बिल्डिंग हल्के पीले रंग की है और उसे पर हिंदी में बलूरघाट लिखा हुआ है।

एक छोटी सी मेज पर एक मूर्ति भी दिख रही है।

घर के किनारे छोटे छोटे शेड बने हुए हैं जिनमें लाइट बल्ब जल रहे हैं।

कुछ लोग टहलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक सड़क का सीन दिखाई दे रहा है जो दो पहाड़ों के बीच से गुजर रही है।